प्लेट है और नीचे चटाई बिछी --

फुवारा लगा हुआ है | उधर रेड कलर के फूल भी नज़र आ रहे हैं । इधर पानी की सटक नज़र --

यह एक रोड है रोड के आगे दो बिल्डिंग नजर आ रही हैं दो बिल्डिंग के साइड से भी रोड गयी है इधर हरा सा एक झाड़ लगा हुआ है और --

मैदान है यहां पे दो बस खड़ी हैं। एक ठेलिया खड़ी है। उधर एं कुछ जूस की दुकान है संतरा या --

यह बहुत बड़ी पहाड़ी है । पहाड़ी में पत्थर नजर आ रहा है। पत्थर रेड और हल्का हल्का ब्लैक है । उधर हरे कलर का है और राइट साइड में भी रेड नजर आ रहा है ।